ये एक पार्लर की तस्वीर है जिसमें की लाल और उजले कलर की कुर्सियाँ तीन रखी हुई हैं बहुत सारी अ क्रीम -वगेरा रखी हुई हैं ।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की ऑरेंज कलर का शर्ट पेहना हुआ है और उजला कलर का अ धोती पेहना हुआ है।

ये एक चौराहे की तस्वीर है जहाँ की बहुत सारे आदमी दिखाई दे रही है छोटी सी दुकान लगी हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे --

और एक आदमी है जो की काला कलर का टी-शर्ट और काला कलर का पेंट पेहना हुआ है।

बहुत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है और आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है ।

इस तस्वीर में बड़ा सा एक घर दिखाई दे रहा है छोटी-छोटी कांच की खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं ।

और पीला कलर का घर दिखाई दे रहा है इस त तस्वीर में --

इस तस्वीर में छोटी-छोटी मस्जिदे दिखाई दे रही है उजले कलर की।

और एक गाड़ी है वो गुलाबी कलर का है ।

इस तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे है ।

आसमान उजला कलर का दिखाई दे रहा है लोहे --

एक वहां नेम प्लेट लगा हुआ वो दिखाई दे रहा है।

और ब्लू कलर का पेंट पहना हुआ है और लाल कलर का टोपी पहना हुआ है ।